ऑटो जाता हुआ दिख रहा है और बोहोत सारे पर

फल केले एप्पल मुझे बिक्री करते हुए नजर आ रहे --

एक ही ब्लू कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पैंट में --

आकर खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है।

जिसका पेंट मुझे येलो कलर में कलर किया हुआ लग रहा है और उसके ऊपर दो तीन फोन नंबर भी लिखा गया है।

और पिंक कलर में किया हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसके ऊपर येलो पिंक रेड कलर के फूल से मुझे गेट डेकोरैशन किया हुआ नज़र --

और उसके साइड में मुझे इस दुकान में मैगी चाउमीन सब बिकता --

और उसके ठीक बगल में मुझे एक वाइट कलर का दो तल्ला फ्लैट भी देखने को मिल रहा है जिसमें की मुझे एक ग्रीन कलर का लाइट --

यहाँ पर मिक्की माउस का बलनुस से सजाया हुआ दो मिक्की माउस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है।

और दो बच्चे खड़े हुए साइड में मुझे दिख रहे हैं और एक नाव भी इस गंगा जी से जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

समझाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर सब बच्चा लोग एक चार्ट पेपर लेकर उसको गोल आकार में काटकर --

इस दुकान में साइकिल मुझे देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर मुझे छोटा सा बच्चा लोग का गाड़ी भी देखने को मिल --